दाईं ओर एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

यह दृश्य इमारत का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हॉल का दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने पलंग पर कुछ कॉपी किताबें भी रखी दिखाई दे रही है।